सामने एक घर है जो कि वाइट और हरा कलर का है बॉर्डर ब्लू और रेड है सामने एक आमरुद का पेड़ है जिसमें कुछ पत्तियाँ और कुछ अमरुद भी पड़े हुए हैं ।

कैफ़े का पिक्चर है। इसमें ऑरेंज कलर का टेबल है है। थ्री लाइट है एंड एक शटर है।